जहां हर तरह की राशन उपलब्ध है।

जहां की कोने में एक पेड़ है.

मौसम बारिश का मौसम लग रहा हे.

सामने काली कलर की सीढ़ी है।

जैसे की हेर बैंड है क्लिप है.

जितने भी एअररिंग्स हे ये सब.

यह स्त्री एवं प्र प्रसूति रोग विशेषज्ञ है।

यहां पे बालू रखी गये हैं।

जिसके एक हाथ ऊपर एक हाथ निचे.

यहां पे सामने जींस रखा हुआ है.

एक जेंट्स हे दो बच्चा हे एक बच्चे के हाथ गोद मे एक बच्चा हे.

की ये लगे हुए एक पाईप हे.

यहां के विंडो पे एक बो--

सभी लोग बैठे हुए हैं।

हेडलाइट्स के बिच मे बजाज मैक्सीमा लिखा हुआ है.

काली कलर की चेयर लगाई गई है.

ऊपर में ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बैलून से डेकोरेट किया गया है.

एक बच्ची स्टेज पर स्पीच दे रही है.

बाहर में एक आदमी खड़ा--

ब्लू कलर का जींस पहना है हाथ में घड़ी पहना हुआ है।

यह बजरंगबली का मंदिर है बजरंगबली के हाथ मे पहाड़ और गदा है.

जो ब्लू रंग से लिखी गई है करनीबाग बी देवघर झारखंड में स्थित है.

लाल रंग का बॉर्डर दिया हुआ है चारों ओर वृक्ष है.

दो औरतें फूल तोड़ रही है.